आप देख सकते है तीन औरते --

आप देख सकते है पुराना महल है।

आप देख सकते है यह जिला शिच्छा पदाधिकारी का घर है जिस में दो बाइक बहार में खड़ी है साइड में एक घर दिखाई दे रहा है वो पुराना--